यह एक कॉटेज है जहाँं पे बड़ी-बड़ी खिड़कियाँं लगी हुई है और अगल-बगल चारों तरफ से हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक किनारे में स्टैचू और एक सोलर पैनल लगा हुआ है।

हारे हैं और होटल का रंग लाल है।

यह एक हाजीपुर जंक्शन है जिसके बाहर में--

यह एक छोटा-सा दुकान है जिस पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है दुपट्टा सेंटर ।

एक अंकल साइकिल पे चढ़ के जा रहे हैं।

यह एक द ब्रो हाउस है जिसमें हैंगिंग में फ्लावर वास बहुत सारे लटके हुए हैं इंटीरियर बहुत ही सुंदर किया गया है लोहे का है और--

यह एक मेंस ब्यूटी पार्लर है जिसका नाम फ्रेंड ब्यूटी ब्लोम है।

बाहर में दो बाइक और एक स्कूटी खड़ी हुई है।